और कोई कोई खड़ा के मछली खरीद भी रहे हैं।

यहा पर बहोत सारी मछलियां दिखाई पा रहे हैं।

जोकि कुछ कुछ इंसान मछली को काटके वहां पर साफ कर रहे है।

और पीछे पर ब्लू कलर का डार्क लाइट भी जल रहे हैं।

लाइट भी हमें ऊपर में बहुत सारे दिखाई पड़ रहे हैं।

यह एक इंसान एक अ इयरफोंस भी डाले हुए हैं कान पर।

भगवान का फोटो भी रखा है हार्ट शेप का पिलोज भी रखा है।

एक गाड़ी के ऊपर में समान डाल रहे हैं एक ने चटा भी पकड़ा है।

पीछे में बहुत सारे रेलवे का पटरी भी है।

हमें सीढ़ी भी दिखाई पारे है और इंसान लोग यहां पर काम कर रहे हैं बंबूस भी दिखाई पारे हैं।

ग्राउंड पीछे बहोत सारे पेड़ पौधे हैं ग्रीन कलर का --

हमें कुछ कुछ चीज़े साइड की बॉक्स में डाल के रखा है जो कि लेनोवो कंपनी से है।

ये जो ए_टी_एम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस_बी_आई का।

बोतल भी है टेबल भी दो है।

जहां पर प्लांट्स लोग को रखा गया है।

और बैकग्राउंड पर एक पेंटिंग भी है।